और उसपे काँच लगी हुई हैं ऊपर लाइटे दिख रही हैं | दीवाल जो है इसकी सफ़ेद कलर की हैं छत सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही हैं फिर हमको टूथपेस्ट का बॉक्स दिख रहा हैं|

वहा पे छोटी पहाड़ी दिख रही है| हम को जमीन दिख रही है| माटी का कलर दिख रहा है| हरे यहाँ पर घास दिखाई दे रही है| पीछे की जमीन दिखाई दे--